हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है हरी हरी घास दिखाई दे रही है बहोत सुंदर नजारा है।

इस इमेज का नजारा बहोत अच्छा लग रहा है।

पानी सा दिख रहा है रेत दिख रही है पहाड़ दिख रहा है बादल दिख रहे है।

बहुत अच्छा लग रहा है बैठने के लिए कुर्सी बनी हुई है।

इस इमेज में फ्रूट दिखाई दे रहे है।